ये एक रथ है जोकि बहोत अच्छे से सजाया गया है और इसमें दो--

सायकल के ऊपर जो दुकान है उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें तरह तरह के टायर बने हुए हैं टायरों --

बहुत बड़ा समुंदर हैं जो की पानी बहुत अच्छा हैं इसका बहुत अच्छी लग रहीं हैं।

तरीके से बनाया गया है उसमें दो सामने लड़कियां खड़ी है और तीन--

बहोत सारे गमले हुए लगे हुए हैं इसमें टाइले ल--

और सामने एक दरवाजा लगा हुआ है जोकि बंद--

रेड बहोत सुंदर सुंदर है यही इसके सामने बहोत सारे पौधे लगे--

एल_जी लिखा गया है जो कि बहुत अच्छा है बोर्ड का रंग है लाल व्हाइट बहुत अच्छा लग रहा है और आसमान है।

इसका हेयर स्टाइल बहोत सुंदर लग रहा--

पानी की बोटल पड़ी हुईं हैं जो की चाय--